जिसमे एक पार्क के अंदर हाथी के कुछ स्टेच्यू बने हुए हैं।

मंदिर का द्वार खुला हुआ है यहाँ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और एक घंटी भी टंगी हुई है | यहाँ एक झंडा भी लगा हुआ --

जो एक टेंट की है। यहाँ पर काफी कलर भी दिख रहें हैं।

जो एक बिल्डिंग की है। इस बिल्डिंग के बाहर काफी सारे पेड़ --

यहाँ रोड पर एक बस एक कार और एक गाड़ी चलती हुई दिख रही है| आइड साइड(side) कुछ पेड़ घर और बिजली के खम्बे भी --

यहाँ पर एक झूला झूलते हुए बच्चा दिख रहा है। राइट साइड काफी बड़े पेड़ भी हैं।